more on grep के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
कुछ अधिक grep grep commands
कुछ उदाहरणों के द्वारा
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu लिनक्स version 1204 operating system और
gnu bash version 4224
ध्यान दें अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
पूर्व आवश्यकताओं में
आपको लिनक्स terminal के मूल तत्वों का ज्ञान होना चाहिए
आपको grep से परिचित होना चाहिए
सम्बंधित tutorials के लिए कृपया हमारी दर्शायी website पर जाएँ:
हम एक से अधिक patterns का मिलान कर सकते हैं
फिर हमें hyphen e विकल्प उपयोग करना है
मैं वही फाइल grepdemo txt उपयोग करूँगी
माना हम उनके लिए जानकारी ढूँढना चाहते हैं जो या तो civil के हैं या electronics के हैं
terminal पर type करें:
grep space hyphen e space double quotes में electronics quotes के बाद space hyphen e space double quotes में civil quotes के बाद space grepdemo txt
enter दबाएं
output प्रदर्शित होता है
माना कि आपको choudhary choudhury शीर्षक वाले लोगों को ढूँढने की ज़रुरत है
समस्या यह है कि अलगअलग लोग अपने शीर्षक को अलगअलग तरीकों से लिखते हैं
अतः इसका उपाय क्या है
इन स्थितियों में हम hyphen e के साथ hyphen i विकल्प प्रयोग कर सकते हैं
type करें:
enter दबाएं
output प्रदर्शित होता है
लेकिन कुछ अन्य तरीके हो सकते हैं जिसमें names names लिख सकते हैं
how कितने hyphen e विकल्प दे सकते हैं
स्पष्टतः एक बेहतर तरीके की ज़रुरत है और वह तरीका regular expressions यानि नियमित व्यंजक का है
regular expression text की strings के मिलान के लिए एक संक्षिप्त और स्थिति के अनुरूप ढालने का माध्यम देता है
जैसे कि विशिष्ट characters शब्द या characters के patterns
बहुत से regular expression characters होते हैं
हम इन्हें एकएक करके देखते हैं
character class
यह characters के समूह को square brackets की जोड़ी में उल्लिखित करने की अनुमति देता है
characters के इस समूह में से केवल एक ही मेल खाता है
उदाहरण abc का मतलब होगा कि यह regular expression या तो a या b या c से मेल खाता है
chaudhury को मिलान करने के लिए हम prompt पर type कर सकते हैं
grep space hyphen i space double quotes में ch square bracket खोलें ao square bracket बंद करें square bracket खोलें uw square bracket बंद करें dh square bracket खोलें ua square bracket बंद करें r square bracket खोलें yi square bracket बंद करें double quotes के बाद space grepdemo txt
enter दबाएं
output प्रदर्शित होता है
यह अभी भी choudhuree में double e के साथ मेल नहीं खाता
अगर हमें एक बड़ी range को उल्लिखित करना है तो टाइप करें:
range का पहला अक्षर dash आखिरी अक्षर
माना हमें किसी digit का मिलान करना है तो हम केवल 09 लिखते हैं
characters के इस समूह से एक का मिलान किया जाता है
asterisk: asterisk ठीक एक पहले वाले character के 0 या अधिक बार होने को दर्शाता है
उदाहरण के लिए ab asterisk a ab abb और abbb से मेल हो सकता है
अतः उन छात्राओं के name का मिलान करने के लिए जिनका name mira है
prompt पर type करें:
grep space hyphen i space double quotes में m square bracket खोलें ei square bracket बंद करें asterisk r a a asterisk quotes के बाद space grepdemo txt
enter दबाएं
output प्रदर्शित होता है
dot regular expression किसी एक character का मिलान करता है
माना हम ऐसे शब्द ढूँढते हैं जिनमें चार अक्षर होते हैं और जो m से शुरू होते हैं
हम सिर्फ type करेंगे
grep space double quotes में m डॉट डॉट डॉट space quotes के बाद space grepdemo txt
enter दबाएं
output प्रदर्शित होता है
यहाँ quotes में space महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 5 या अधिक अक्षरों के शब्दों का मिलान करेगा
line में हमारा pattern कहाँ है यह ढूँढने पर हम विशेष ध्यान we सकते हैं
यह line की शुरुआत में हो सकता है
उसके लिए हमारे पास caret साइन है
अब यदि हम उन प्रविष्टियों को प्राप्त करना चाहते हैं जिनका roll numbers a से शुरू होता है
हम जानते हैं कि file में roll नंबर पहला क्षेत्र है
prompt पर type करें: grep double quotes में caret साइन a quotes के बाद grepdemo txt
enter दबाएं
output प्रदर्शित होता है
उसी प्रकार file के अंत में pattern के मिलान के लिए हमारे पास dollar साइन है
7000 से 8999 के बीच छात्रवृत्ति ढूँढने के लिए हमें लिखना है:
grep space double quotes में square bracket खोलें 78 square bracket बंद करें dollar साइन quotes के बाद space grepdemo txt
enter दबाएं
output प्रदर्शित होता है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
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
एक से अधिक pattern का मिलान करना
अलगअलग spelling वाले शब्दों को जांचना
character class
ऐस्टरिस्क का उपयोग
dot प्रयोग करके किसी एक character का मिलान करना
file की शुरुआत में एक pattern का मिलान करना
file के अंत में एक pattern का मिलान करना
नियत कार्य में 5 अक्षर वाली और y से शुरू होने वाली प्रविष्टियों की सूची बनायें
नीचे दिए link पर उपलब्ध video देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकरी निम्न लिंक पर उपलब्ध है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद